यह देखिये ये एक पार्क है और यह पार्क के अन्दर का व्यू है उधर एक बैठने के लिए कुर्सियाँ भी लगी हैं पेड़ भी लगे हैं सौर ऊर्जा प्लेट भी लगी हुई हैं रात को यहा पे लाइटे भी जलती हैं।

यह देखो यह एक पार्क है काफी अच्छा व्यू है यहाँ का काफी शानदार भी लग रहा है यहाँ पर देखो एक फव्वारा लगा हुआ है।

और यह जालौन मे स्थित है। काफी बड़ा बना है ये देखिए आप काफी अच्छी तरीके से और पेड़ भी लगे हुए है काफी।

चाभी है यहाँ पेड़ भी लगे हैं कटिंग भी काफी अच्छे से की जाती है।

जिसके ऊपर चढ़ रही रही है यहाँ पर देख कर लोग दूर-दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं यह गार्डन काफी --

यहाँ पर लोग दूर-दूर तक घूमने के लिए आते हैं काफी अच्छा व्यू है यहाँ का काफी शानदार लगता है सब लोग दूर-दूर तक घूमने के लिए भी आते हैं सुबह टहलने के लिए भी आते ---

यहाँ एक पार्क है जो काफी बड़ा है काफी शानदार तरीके से बनाया गया है देखिए है।

यह देखिये यह एक दुकान --